मयूरी इलेक्ट्रिक ऑटो एक लाल रंग की है एक नीले रंग की है एक हरे रंग की है।

इस तस्वीर में हमें किसी पार्क की तस्वीर दिखाई दे रही है जहाँ बहुत सी बिजली लगे हुए दिख रहें हैं लाइट दिखाई दे रहें पेपर बॉल में लगा हुआ दिखाई दे रहें पेड़-पौधे दिखाई दे रहें हरे-भरे घास दिखाई दे रहें हैं।